उस हाथी पे एक आदमी खड़े हैं।

यह एक शादी की फोटो है।

इसके सामने मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है।

दुकान के सामने एक आदमी खड़े हैं।

यहां से एक ट्रेन सासाराम तक पहुंच जाती है।

यहां पे बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

इसमें कई रंगों की ट्रैक्टर रखी हुई हैं।

इस होटल को बहुत ही अच्छे से सजाया गया

इस एजेंसी का नाम एलिटिव व्हीकल --

कई प्रकार के सामाने दिखते हैं।